चित्र चित्र में ई-रिक्शा दिखाई दे रहे हैं। चित्र में लोग दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में रोड दिखाई दे रही है चित्र में बोर्ड दिखाई दे रहा है।